ये यहाँ पे पंजाबी में लिखा हुआ है।

यहां पे देख सकते हो यहां पे --

ये यहां पे देख सकते हो यहां पे ये--

आदमी खड़े हुए हैं ये यहां पे देख सकते हो।